यहां पे ए_टी_एम भी लिखा हुआ है मतलब कि ए_टी_एम से आप पैसे भी निकल सकते हैं बहोत सारे बाइक है एक आदमी निकल रहा है।

उम्म राधा कृष्ण का मूर्ति है और अगल बगल में अ बैलून सब लगा हुआ है।

औड़ पेड़ पौधे भी है पीछे घर वगैरह सब भी है औड़ अह नदी भी है पोल भी है औड़ --

और बहुत बूढ़ा आदमी एक खड़ा है ऊपर छत है ओड़ --

यहां पे भी एक बगल में एक और दुकान है जिसका कि शटर गिरा हुआ है।

और ऊपर में तार बहुत सारे हैं और यहां पे बाहर में ही कपड़े रखे हुवे हैं।